बहोत सारी बाईके यहां पर खड़ी हुई है।

और यहां पर नीचे टाइल लगी हुई है।

और बस के बाद यहाँ पर बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

और यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसमें यहां पर बहुत सारे आदमी और डॉक्टर बैठे हुए--

और यहां गाड़ी भी दिख रही है।

पंटा भी लगा हुआ है।

पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहाँ पर एक आदमी पानी पी रहा है।

चित्र में हमें यहां पर ये ए--

और यहां पर पीछे एक गत्ते का डिब्बा भी धरा हुआ है।